एक झरना है सामने की तरफ से एक झरना गिर रहा है जो पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है इसमे पतला-पतला पानी कुच मोठी-मोठी बुँदे नजर आ रही है।

फल है। सामने की तरफ़ से इसमे झरना निकल रहा है। सामने की तरफ़ से इसमे पानी निकाल रहा है। ये ऊपर चट्टानों मे से पानी निकल रहा है। सामने की तरफ़ एक सड़क है। यहा पर बैक खड़ी हुई है।

वॉटरफॉल है सामने की तरफ एक बड़ा सा वॉटरफॉल नजर आ रहा है जिसमे चारों तरफ बड़े-बड़े पहाड़ चट्टानें है नीचे की तरफ इसमे एक कुंड बना हुआ है जिसमे पानी भरा हुआ है।

एक पार्क है सामने की तरफ एक बड़ा सा पार्क नजर आ रहा है जिसमे एक विशाल सी तोफ बनी हुई है नीचे की तरफ एक टेंकर बना हुआ है।

एक हॉल है। सामने की तरफ़ एक बड़ा-सा हॉल नजर आ रहा है। जिसमे ऊपर की तरफ़ एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसमे छत्रप--

एक जंगल है सामने की तरफ एक वनविहार बना हुआ है जिसमे एक आर्टिफ़िशियल चीता बना हुआ है सामने पीछे की तरफ इसमे बड़े-बड़े बरगद के पड़े है।

जिम है सामने की तरफ एक बड़ा सा जिम नजर आ रहा है सामने बाइसेप्स मशीन रखी हुई है जिसमे एक ब्यक्ति बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा है। पीछे के तरफ इसमे दो ट्रेड --